सामने की तरफ एक टी शर्ट लटकी हुई है हरे रंग की --

ये एक गैराज का वीडियो है गैराज के चारों तरफ लोहे के --

पुल के ऊपर कुछ हरे-हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

पुल के नीचे भी कुछ पेड़ हैं और कुछ व्यक्ति यहां पर खड़े हुए हैं।

इधर दोनों तरफ एक तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

हाथ को हैंडल पर रखते हुए पीछे की तरफ बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

और पर्दे के पास में एक पलंग बिछा हुआ है उस पर सफेद रंग की--

ये एक ब्यूटी पार्लर का वीडियो है यहां पर सामने --

कुछ ट्यूब भी हैं और एक औरत का फोटो भी --

नीचे की तरफ डस्ट बिन हैऔर एक कुर्सी भी लगी हुई है।

जिसके दो बड़े-बड़े टायर हैं और बीच में खलियान --

तीन कुर्सियों पर सफेद रंग का कवर चढ़ा हुआ है।

पानी भरा हुआ है और कुछ हरे-हरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

उसके ऊपर नीले रंग से पेप्सी लिखा हुआ है सामने एक काउंटर भी बना हुआ है।

एक व्यक्ति ने गुलाबी रंग की शर्ट और काले रंग की पैं --

नजर आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

नीला आसमान नजर आ रहा है और नीचे --

एक व्यक्ति नीचे की तरफ झुका हुआ है।

एक व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है और नीले रंग की टी-शर्ट हुई है।

हाथी के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है इसने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है।

ट्रॉली बैग है और पीछे की तरफ एक हरे रंग की बिल्डिंग है और बहोत सारे हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां पर रैक में बहुत सारे चप्पल सैंडल्स लगे हुए हैं।